ई पुराना है कोई ब बिल्डिंग है मीनार टाइप का होगा और अंग्रेजों के जमाना का दीवाल लग रहा है।

इ तो अपना बिहार का फोटो सावन का होगा--- ]

अ दुकाने का हौ --

कुछ हो रहा है भोजन-उजन हो रहा है।

और आगे से भीड़ लगल है घर व मंदिर है | ऐसे बहुत अच्छा मंदिर घर है | मंदिर भी अच्छा है धाजा भी है बजरंगबली का मंदिर |

और इधर से ऊपर बेहेने वाला है।